ऊपर टेडी बीयर जैसे खिलौने भी लगे हुए हैं लाल ग्रे और नीला--

एक नीली शेड है पीले रंग का फूले भी है और गेट भी है पीले रंग का।

और दो गमले भी पड़े हुए हैं।

सामने खंभा भी है और लाइट भरी बॉक्सेस भी पड़ी हुई हैं।